मुझे इस तस्वीर मे एक बड़ा सा संगमरमर का गेट दिखाई दे रहा है जिसके उपर झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है उसके बाहर --

ग्रनेट की फिसलपट्टिया बनी हुई दिखाई देर ही है और उसके पास मे पाइप लगे हुए दिखाई दे रहे है सामने टेबल रखी हुये--

दिखाई दे रहा है उसके वहा पर एक वॉटर कूलर प्यूरिफायर भी लगा हुआ है सामने खिड़की से धूप आ रही है।

दो डबल्स टंगे हुए दिखाई दे रहे है। मशीन का कलर --